व्हाइट कलर की और ग्राउंड में स्कूल की बसेस खड़ी हुई हैं स्कूल मैजिक्स हैं ।

दो लोग कुर्शी पर बैठे हुए है और दो जन दो आ दो लोगों की --

और ब्लू कलर के खम्बे दिखाई दे रहें।

फिसल पट्टी पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

वहाँ पर उसके नाम लिखा हुआ है अंदाज।